वॉल में थोड़ा फ्लावर पोथी से रखा हुआ है।

लाल कलर का है इसका नीचे में ब्लू कलर का दो सिंटेक्स रखा हुआ है।

उनका अंदर में बहोत ज्यादा बैलून लगा हुआ है ग्रीन पिंक ब्लू कलर का।

और बड़े से डेकोरेशन किया हुआ है पर्दा लोग भी है और ये फ्लावर लोग अलग अलग कलर से--

और स्कूटी दिखाई दे रहा है।

और उसमें एक दो घर भी दिखाई दे रहे है इसमें घर जो नया बनाने वाला दिखाई दे रहे है।

अलमारी बना हुआ है अलमारी के अंदर में बहुत ज्यादा अलग अलग सामान रखा हुआ है।

साइड में कार्टून बॉक्स व्हाइट और येलो का दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक घर दिखाई दे रहा--

वह अलमारी भी है इसमें कपड़ा हैंगर में लगा के रखा हुआ है और बुक्स लोग दिखाई दे रहे हैं।

और दरवाजा में बहुत ज्यादा फोटो लोग चिपका के रखा हुआ है दिखाई दे रहा है।

बहुत ज्यादा विंडोज भी दिखाई दे रहे हैं विंडोर--

ये एक घर का अंदर है।

एक लोकल घर भी दिखाई दे रहा है। पत्ता से बनाया हुआ घर।